और एक डी_सी_एम के पीछे एक ड्रम भी रखा हुआ है।

और पीछे ही कुछ पीले रंग के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर दो लड़के भी खड़े हुए हैं।

इसमें पानी की हल्की हल्की लहरें आ रही हैं।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

और उसके साथ साथ वहां पर कुछ और भी समान रखा हुआ है।

इसमें कुछ आलू रखे हुए हैं प्याज रखी हुई है लहसन रखा हुआ है।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

और उस पर एक टीन भी गिरी हुई है।

यह फोटो किसी मैरिज हॉल की लग रही है।

एक आदमी ने पीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ये किसी दुकान या किसी संस्था के बाहर का फोटो लग रहा है।

इस फोटो में एक सफेद टंकी दिखाई दे रही है।

फिर ऐ_सी भी लगी हुई है और दरवाजे भी लगे हुए हैं।

लड़की के हाथ में कुछ बैग है और उसने मास्क लगा रखा है।

इसमें कुछ आदमियों के चेहरे को ब्लर किया हुआ है।

उन आदमियों के सामने एक पीले रंग का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

जिसके कांच का शिशा बना हुआ है।

इस फोटो में एक कंपनी नजर आ रही है।

इसमें कुछ बत्तके दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ लड़कियां भी दिखाई दे रही--

आदमी ने कान पर फोन लगा रखा--

इसमें वार्ड में कुछ स्विच लगे हुए हैं।

इसमें हल्का सा एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

एक साइड में पन्नी में भी यें रखे हुए हैं।

यह फोटो किसी स्कूल या कॉलेज का लग रहा है।

एक टोकरी में कुछ अंगूर भी रखे हुए हैं।

जिसने माक्स लगा रखा है।

एक साइड में कुछ ईंटें भी पड़ी हुई है।

यह भी जंगह जंगह से टूटा हुआ है।

इसमें एक लड़की ने कान पे फोन लगा रखा है।

इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस लड़के के चेहरे को ब्लर किया हुआ है।

और इस पर नीले रंग की टिन भी पड़ी हुई है।

इस पर एक बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है।

जिस पर एम_आर_पी लिखा हुआ है।